बगल में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं वाइट कलर का अंदर में बहुत सारे बल्ब जलाए गए हैं ।

नीचे दो सीढ़ी दिख रहे है।

बहोत सारे रेड कलर के बाल दिख रहे हैंबच्चों के खेलने का सामान दिख रहे हैं।

यहां बहोत सारे गाड़ी पार्क किए हुए है सामने एक ब्लू कलर का चेयर दिखे रहा है।

जो एक बोर्ड पर लिखा दिख रहा है बीच में बहुत बड़ा रेड कलर से आर लिखा हुआ है।

नीचे एक गेट ब्लैक कलर का है। जिसमें शीशा लगा हुआ है।

गल में एक टेबल बनाए गए हैं जिसके ऊपर पानी का बोतल रखा हुआ है यहां थैला टांगे दिख रहे हैं एक बाल्टी प्लास्टिक का दिख रहा है।

नीचे एक पेड़ लगा हुआ है जो बहुत हरा भरा है।

के बगल में दो तीन गोदरेज दिख रहे हैं जो ब्लू रेड और वाइट कलर के हैं।

बगल में बॉक्स रखा गया है।

ऊपर में जालीदार बना हुआ है। सामने बहुत सारे वाइट कलर के बल्ब जलाये गए है।

नीचे बहोत सारे पानी जमा पड़ गए हैं।

तीनों कटोरी में एक में दाल रखा हुआ है।

यह एक हॉस्पिटल का चित्र है।

कुछ टोपी पहने हुए हैं कुछ बैग लटकाये खड़े है।

इस चित्र में एक महिला नृत्य करती हुई दिख रही हैं।

चेयर दिख रहा है। बगल मे टेबल दिख रहा है।

नीचे एक खिड़की दिख रहा हैजिसमें गेट लगा हुआ है।

यह एक दुकान का चित्र है।

बगल में वजन करने का तराजू रखा गया है।

उसके बगल में चेस्ट मारने का मशीन है।

व्हाइट कलर का बल्ब जला दिख रहा है बगल में दो आदमी खड़े दिख रहे हैं।

ऊपर करकेट का बना हुआ है बगल मे बहोत सारे पानी गिरे पड़े हैं।

यह जिम ट्रेनिंग सेंटर का चित्र है।

इसमें एक रनिंग मशीन दिख रहा है डंबल बहुत सारे दिख रहे हैं।

टेबुल दिख रहा है एक पंखा दिख रहा है बहुत सारे अवार्ड दिख रहे हैं।